और जहां पर कुछ कांच के दरवाजे लगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ पेड़ लगे हैं।

और सामने कुछ गाड़ियां खड़ी है।

और सामने एक गेट लगा हुआ है और--

जहां पर कुछ कुर्सियां और कुछ बेंच रखे हुए हैं।

जहां पर सामने एक पेट्रोल पंप हैं।